यहाँ पर एक बैनर लगा है जो की ब्लू कलर से है और शटर है वो पूरा ब्राउन है।

एक बैग भी हो यहां पे बहुत सारे तार भी दिख रहे है के घर में बहुत सारी लाइट लकडिया भी लगी हुई है कुछ कपड़े भी डले हुए है।

यहाँ पर एक बैनर लगा है जो की वाइ और रेड कलर का है असमान पूरा सफेद दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी है |